लेकिन उस पे जो उसके जो बीच से जो सूर्य की किरणे आ रही हैं वो आसमान की जो झलक है वो बहुत ही खूबसूरत लग रही है गाईज मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है अब आप लोग समझ लीजिए।

हैलो गाइस आप लोग देख रहे हैं। ये मुज़्ज़रफ़फ़र नगर डिपो आपका हार्दिक स्वागत करता है यानी ये परिवहन निगम है। जहाँ पर देख रहे हैं। बहोत सारी गाड़ियां यानी बाइक और प्लस एक कार भी दिख रही है।

हेलो गाइस आप लोग देख रहे हैं कि बोहत सारे लोग कावड़ यात्रा पर जा रहे हैं। आप देख ही रहे है। आप कितने लोग तो चप्पल पहन कर जा रहे हैं। कितने लोग पैदल जा रहे हैं लेकिन गाइस --

हेलो गाइस आप लोग देख रहे है ये एक मार्केट है। यानी आप समझ लीजीये जिसके ऊपर एक बोर्ड लगा है। इंडियन बैंक का और जस्ट उसके नीचे सैमसंग मोबाइल की शॉप है।

अ मतलब वो देने वाला है क्या बोलते है मेन्यू और बाकी तरफ इस टेबल पर बैठ के खाने --

इसका जो लूक है वो देखने बहुत ही खूबसूरत लग रहा है आप लोग अंदाज़ा लगा सकते है और पहचान स --